ये एक स्टेशन है जहाँ से बस गुजरती हुई दिखाई दे रही है जिसके ऊपर एक पूल बना हुआ है और लाइट के तार दिखाई दे रहे है चारों तरफ पेड़ -पौधे लगे हुए है ऑल टाइल्स लगे हुए है जहाँ पिंक और रेड ब्लू कलर रेड कलर के दिखाई दे रहे --

यहाँ खाली रोड़ दिखाई दे रही है यहाँ एक कमरा टाइप का कुछ बना हुआ है जिसमें कुछ लिखा हुआ है जो खाली पड़ी हुई हैं। इसके--

शायद ग्रीन कलर ब्राउन कलर के टास लगे हुए है सायद पिंक कलर ऑरेंज कलर के टास लगे हुए है और आसमान हल्का पूरा आसमानी दिखाई दे रहा है और बच्चो के लिए खेलने के लिए बीच मे रास्ते मे इसकी चेयर भी पड़ी--

वे बाजु मे जगह पड़ी हुई है जहाँ लुई प्रगी हुई है। एक शटर है और ऊपर--